यहाँ पर ये वाला सेल्फी लिया है कितना अच्छा-सा फोटो लिया है बहुत ही सुन्दर-सा बनाया गया है बहुत ही सुन्दर-सा दृश्य यहाँ पर है दृश्य बन रहा है यहाँ का बहुत सुंदर दृश्य यहाँ पे दिखाई दे रहा है ।

यहाँ पे देख सकते हैं कितना बर्थडे पार्टी का सजाया गया है बहुत इसमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है उधर देख सकते हैं कितना बैलून रंग-बिरंगे बैलून यहाँ पर दिया और ऊपर एक हैप्पी बर्थडे का --

बहुत ही सुंदर यहाँ पे घर दिखाई दे रहा है उधर भी गेट है।